एक पीछे एक आदमी है उसने हरे कलर की टी शर्ट पहनी हुई है वह भी टेबल पर बैठा है।

बैंक के सामने खड़े है दो लेडिज है वह आपस मे बात कर रही है एक लेडिज के हात मे पर्स है।

यहाँ पर बहुत सारी किताबे है यहाँ पर तीन बच्चे है उन मे से एक बच्चे ने मास्क लगाया हुआ है।

यह एक मच्छी की दुकान है यहाँ पर बहत छोटी-छोटी और कुछ बड़ी-बड़ी मच्छीया है एक आदमी है वह बैठा हुआ है उसके बाजू में--

यहा पर एक मुसलमान खड़ा है उसने काले कलर का सूट पहना हुआ है।